ये एक ऑपिस है जिसको गुब्बारे द्वारा बोहोत खूबसूरती से सजाया गया है।

और सामने एक दीवार है जिसका रंग हल्का पीला है और उसपे दो स्क्रीन लगी हुई हैं।

और इसमें सूरज छिप रहा है और अपनी रोशनी समुद्र पर डाल रहा है और इसमें एक नाव खड़ी है जो नाव में बैठकर आदमी समुद्र में घूमते हैं।

इसने टी-शर्ट और पेंट पहन रखी है और ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है।

और इसमें देखिए एक बोरी में हरी मिर्च है लाल मिर्च है मटर है। गोभी रखी हुई है और लोग सब्जी भी खरीद रहे --

इसमें हरे रंग के अंगूर हैऔर काले रंग के अंगूर हैअनार भी है संतरें भी हैसेब भी है।

जिसके कंधे पे बैग है और वो अपने स्कूल की तरफ देख रहा है।

ये एक लैपटॉप की दुकान है जो बोहोत ही सुंदर है। यहाँ पर लैपटॉप बेचे जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं।